दो चेअर रखी हुई है चारों तरफ हरे-भरे पेडपौधे है नीला आसमान दिख रहा है।

और बाहर कुछ बाइक खड़ी हुई है सामने ही और हरे पेड़ दिख रहा है रोड दिख रही है।